चित्र में मुझे एक सफेद कलर का सोफा नजर आ रहा है जिसके ऊपर एक ए_सी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे बहोत सारी कुर्सी नजर आ रही हैं जिसके पास में एक महिला भी जाती हुई नजर आ रही हैं।

तस्वीर में जैसा कि मैं देख पा रही हूं बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं।

उनकी प्लेट में कुछ सलाद और कुछ प्रकार की सब्जियां नजर आ रही है और साथ में रोटी भी नजर आ रहे हैं।

आस पास कुछ पौधे भी लगे हुए हैं पीछे कुछ बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर में जैसा कि मैं देख पा रही हूं बहोत सारे टायर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि कले कलर के हैं।